यहाँ पे आप देख सकते है ये जो सड़क है ये देखिए कितनी गंदी दिख रही है हमें और उस के आगे देखिए किसी रेलवे स्टेशन की बस स्टैंड की फ़ोटोज़ दिख रही है।

ये देखो ये जो दिख रहा है जो की एगो तो काफी अच्छा है ये देखो जो रेलवे स्टेशन हैं यहां का और ये रेलगाड़ी खड़ी हुई है।